खड़ा होकर सबको कुछ समझा रहे हैं उसी का बोर्ड लगा है पंखा लगा है।

सब अपने-अपने जगा पर बैठे हुए हैं। लेडिस भी हैं जेन्स भी हैं।

पार्टी का महौल दिख रहा है जिसमे --

बहुत बड़ा नदी है और ऊपर पुल बना हुआ है ।

कुछ लोग खरे हुए है उधर भी एक टेबल दिखाई दे रहा है।